इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ आदमी लाइन से खड़े हुए पुजारी जी नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर पत्ता गोभी और कुछ फ्रूट दिखाई दे रहे हैं और सामने एक आ लड़का भी खड़ा नजर आ रहा है।

धुंधले-धुंधले से बिल्डिंग दिखाई दे रही है काफी दूर --

और सामने बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है अंदर एक व्यक्ति इसमें नहाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा हमें यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने देखियेगा यहां पर एक मकान का काम चल रहा है जहां पर देखियेगा छत बनती नजर आ रही है और काफी सारी बल्लीया --

साइड में यहां पर नीचे कुछ कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे भरका देवी लिख आइसक्रीम --

इस इमेज में देखिए यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है अह जिसकी खिड़कियां नजर आ रही हैं ऊपर की ओर देखिएगा तो पेड़ के पत्ते और --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक डॉक्टर का क्लीनिक दिखाई दे रहा है।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

पिटल स्प्राइट नर्सरी लिखा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखीएगा सामने हमें यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो फूलों से सजा हुआ है और बोर्ड पर सामुदायिक भवन लिखा हुआ नजर आ रहा है।